कार आती हुई दिख रही हैं जो व्हाइट कलर की है और रास्ता दिख रहा हैं वहां पर।

बहुत सारे सोफा सेट्स नज़र आ रहे हैं और कुशन वहाँ पर दिख रहे हैं जो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ब्लू कलर के और वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से इन्हें सोफा को डिजाइन किया गया है।